यहाँ पे हम कुछ बिल्डिंग जैसे जगह देख सकते है इन बिल्डिंग के बाहर हम बहोत सारे सुंदर-सुंदर फूल के पेड़ देख सकते है इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे जंगली पेड़ भी हम देख सकते है। ।

इससे इस मंदिर में प्रवेश किया जाता है इस सीढ़ी में हम दो व्यक्ति को--